ये सफ़ेद कलर का डिब्बा रखा हुआ हैं जिसपे नीले रंग के से कुछ लिखा हुआ है | पीछे की तरफ देखने पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो कि सफ़ेद रंग की है उसके बराबर में टायर रखा है और एक दीवार दिखाई दे रही है।

एक टिन शेड दिखाई दे रहा है| टिन शेड के नीचे एक कमरा बना हुआ है| कमरों में यहां पर दीवार दिखाई दे रही है| दीवार पर हरे रंग की आकृति बनी हुई दिख बनी हुई है| खिड़कियां दिखाई दे रही है| बराबर में एक रैक रखी है| रैक में सामान रखा है।

यहाँ पर एक दुकान दिखाई दे रही है। दुकान में एक मेज रखी है। मेज पर बहोत सारी मछलियाँ रखी हैं जो कि लाल रंग की शीट पर बिछी हुई हैं और लाइटें रखी हैं। लाइटें जल रही हैं। पीछे --

बहुत सारे डिब्बे रखे हैं। डिब्बों में सामान रखा हुआ है। आगे कई सारी टोकरियां रखी है। पीछे रैक रखी है। बर्तन रखे हुए है और एक तरफ़ टोकरियां रखी है। टोकरियों में समान दिखाई दे रहा है और कुछ लोग पीछे दिखाई --

सड़क जाति हुई दिखाई दे रही है सड़क के सहारे साईकिल और बहुत सारे वाहन खडे हुए है| सामने एक मोटर साईकिल जा रही है जिसपर दो लोग जा रहे है सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है उस पर कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर एक टिन शेड दिखाई दे रहा है| टिन शेड के बाहर एक बोर्ड लगा है जो की नीले रंग का है| इसपे सफेद और लाल रंग से कुछ लिखा हुआ है| नीचे बहुत ज्यादा मात्रा में --

कुछ एक दुकानें दिखाई दे रही हैं| दुकानों पर रेलिंग दिखाई दे रही है| सामने बहुत सारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं| लोग खड़े हुए हैं| बोर्ड लगे हुए हैं जो की हरे रंग का है| उसपे सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ है।

इसके अलावा टू बोरी रखी है| बोरी पर रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं| ऊपर त्रिपाल लगा हुआ है जो की ऑरेंज कलर का है और भी सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।